यहां पर वी मार्ट है वह बहुत अच्छे लाइटनिंग से सजी हुई है यहां पर शीशा के दरवाजे भी लगे हुए है।

यहाँ पर एक मॉल है मॉल का नाम ट्रेंस है यहाँ पर सामने एक एक ट्रैन्स्फॉर्मर भी है।

यहाँ पर कुछ गाड़ियां भी लगी हुई हैं यहाँ पर आगे तीन बिल्डिंग भी दिख रहे हैं यहाँ पे तीनों शोरूम हैं।

यह रात का समय है यहाँ पर आगे बहुत सारी सफेद रंग की गाड़ियां लगी हुई है और उस पर बैलून से सजावट की गई है।

पर बहोत सारी सफ़ेद रंग की गाड़ियां लगी हुई है गाड़ियों में बैलून से सजावट की गयी है।